ये हवाई अड्डा खोला गया है जहाँ पे दिक्कत है एयरोप्लेन रुका है जहाँ पे बहुत सारे आदमी --

देखिए यहाँ पे कितना सारा समान --

यहाँ पे कोई लोग नहीं दिख रहें हैं बहुत ही सुकून दिख रहा है।

यहाँ पे लगा हउ की सुत्ता रहतीं हैं।

यहाँ पे लाइट है यह पीछे पीछे --

जहाँ पे लोग कुछ लोग बैठे हैं कुछ लोग मैच खेल रहें हैं और अगल-बगल कुछ पेड़ है कुछ --

और यह पानी भी है दे --

मेरे छत का पूरा पाटना है।

बहुत सारी बुक रखे गई हैं। बहुत सारी टेबल और चेयर है।

खरीदने वाले का जितना भी --